करकट की बनी हुई गोदौन है।

टेबल के ऊपर एक बोतल और एक सिगरेट जलाने का लाइटर रखा गया है।

यह पिक्चर किसी स्टेशनरी शॉप की है।

और उसके बगल में एक बाइक है।

यह किसी पार्क का पिक्चर हो सकता है।

जिसके बीच में एक आयरन का बना हुआ अंब्रेला लगा हुआ है।

पूल के बगल में ही बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

और ये एक स्टूडियो की इमेज हो सकती है।

और इलेक्ट्रिक गिटार भी रखी गई है।

और बैक साइड में बहुत ही कलरफुल बोतल रखे गए हैं।

और छोटे-छोटे लड़के हैं जो कि डांस को परफॉर्म कर रहे हैं।

और एक टीचर है उनका जो कि वाइट शर्ट पहने हुए हैं।

फ्रंट में ही एक आइस क्रीम की ठेला है।

और उसके बगल में दो छोटे-छोटे कार लगे हुए हैं।

जिसे हम लोग मस्जिद के नाम से जानते हैं।

और एक ट्यूब लाइट जल रही है दो छोटे-छोटे एलईडी बल्ब जल रहे हैं।

दो फैन लगी हुई है और सभी टेबल पे नंबर लिखे गए है ।

एक कॉलेज के बाहर से ली गई है।

सभी लोग अपना योगा कर रहे हैं और सभी ने अपने बोतल अपने पास रखे हैं।

यह इमेज सड़क से ली गई है।

उसके बगल में एक अंग्रेजी दवाखाना का मेडिकेयर शॉप है।

जिसके बगल में एक केमिस्ट्री की क्लास चलती है।

होस्टल के अंदर में ही दो पिंगर लगाए गए हैं।

हॉस्टल के बगल में ही डॉक्टर एस के शिनहा का बोर्ड लगा है।

जिसमें दो पेट्रोल भरने की मशीन लेफ्ट साइड में है और दो राइट साइड में है।

और उसे ग्रीन कलर की कलर दी गई है।

कुछ युवक हैं जो खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं और एक युवक आपस में बैठकर किसी से बात कर रहे हैं फोन पे।

जिसके अंदर में एक कार खड़ी है।

और बगल में ही बहुत सारे प्लांटिंग की गई है।

इस पिक्चर में एक तिरंगा का इमेज है।

और सामने में ही एक वॉल --

और जस्ट उसके बगल में ही एक पेड़ है आम की--

यह किसी खाली मैदान की इमेज है।

जिसमें तीन विकेट और गोली लगाकर --

क्रिकेट खेलने की पिच तैयार की गई है।

यह इमेज किसी गैराज या सर्विस सेंटर की है।

कार के पार्ट्स को नीचे रखा गया है।

यह इमेज किसी शॉप या मॉल की है।

जिसमें बहुत सारे किताब --

और बहुत सारे किताब के साथ --

और ठेले के बगल में एक स्काई ब्लू कलर का डस्टबिन लगाई गई है।

यह एक रेस्टोरेंट की इमेज है।

दो लैंप लगाए गए हैं बीच में एक एसी लगाई गई है जिसके ऊपर टीवी है।

कुछ लोग बच्चे बैठे हुए हैं सामने में फादर है जो इन सबको गाइड कर रहे हैं और एक ड्रम भी लगी हुई है।

और इसमें एक टेबल पे ग्रीन कलर की बैग रखी गई है।

और कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड्स भी लगे है।

पूरे कलर रेड दिए गए है।

यह इमेज किसी मॉल या शॉप की है।

उसके पीछे कलरफुल बेडशीट भी रखे गए हैं।

जिसमें बहुत सारे पुराने और नए दोनों तरह की किताबें मिल जाएंगी--

और ओल्ड बुक सेंटर नाम है इस शॉप का--

और इसमें एरियल का एक पोस्टर रखा गया है।

झाम ड़खे गए है गिट्टी बिखरी हुई है मौसम साफ है दिन का समय है।

यह इमेज किसी नर्सरी या पार्क की है।

छोटे-छोटे पोर्ट्स में पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

फ्रंट में एक डस्टबिन रखी गई है।

कुछ ब्लैक कलर के बैग्स में गिटार है कुछ ट्रांसपेरेंट सीट में।

एक फ्रंट में आदमी खड़े हैं जो कि दौड़ा लिए हुए हैं।